एक टेबल भी लगाए गए हैं और पोस्ट भी दीवाल पर लगे हुए हैं।

यह एक होटल है और होटल में बहुत सारे आदमी आए हुए --

और घर के आगे साइड ही दो गोल गोल तरह के क्या रखे गए हैं एक रेड और एक आसमानी कलर के।

ब्लैक टी शर्ट और ब्लैक ट्राउजर पहने हुए हैं और वैल्यू टी शर्ट और ब्लू शर्ट पहने हुए हैं।

काउंटर पर रखे गए हैं कंप्यूटर ।

यहां सब बोल बम्ब थहरे हुए है और लिखें हुए है ढाबा में दण्डी सेवा आश्रम।

और बाहर में एक व्यक्ति रोड से गुजर रहे ठेले को लेकर जो कि ठेले में सीमेंट लोड है।

फी पैंडल के तरीके से बनाया गया है न्यू डिजाइन से काफी अच्छे तरीके से बनाया गया है।

साइड में काफी सारे घर भी बनाए हुए हैं।

यह एक कोई स्थान है जहां पर बहुत सारे लाइट लगाए हुए हैंऔर झुमकिया बल भी लगाए हुए हैं।

और एक छोटा सा पेड़ है और--

रेस्टोरेंट के बाहर एक अपाची एक ग्लैमर दो स्कूटी खड़ी है।

और एक लेडिस भी खड़ी है और एक आदमी छत से उतर रहा है और एक आदमी चढ़ रहा है।

क्योंकि यज्ञ मैं सब भगवान की मूर्ति लाए हुए--

टेबल पे अण्डे भी रखे हुए हैं और इधर साइड में जार में पानी भी रखे हुए हैं।

और ए_टी_एम_ से एक आदमी पैसा निकाल रहे हैं और बहुत सारे आदमी बाहर में खड़े हैं।

यह बीकनर स्वीट्स दुकान जो की देवघर में है।

रहा है। ऊपर से पानी गिर रहा है जोकि पूरा सफेद है।

यह एक बस स्टैंड है जहां पर चार बसें खड़ी हैं।

और ये व्हाइट कलर का ये दीवाल है और गेट जो कि ब्लू कलर का है और उस पर एक पोस्टर लगा हुआ है।